हरी-भरी घास दिखाई दे रही है और यहाँ पर कुछ सीढ़ियां भी नजर आ रही है कुछ लोग ठहरे हुए दिखाई दे रहे है।

पर हमें बहुत ही खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है जहाँ पर छोटी-छोटी घास है यहाँ पर हमें दो पेड़े भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर बहुत खुला आसमान नजर आ रहा है और दूर तक दूर की तरफ बहुत ही बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे है।

यहाँ पर पा घास के बीचों-बीच एक पेड़ दिखाई दे रहा है और बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे है और--

घर का कलर व्हाइट है और एक घर का कलर ब्लू भी दिखाई दे रहा है और हमें सूरज की किरनें भी दिखाई दे रही है।

और जो जो ज पेड़े है उनकी छाव भी नजर आ रही हैं बहुत ही लंबे और घने पेड़ हमे दिखाई दे रहे हैं और आसमान हमे नहीं दिखाई दे रहा --

यहां पर बहुत ही दूर कुछ घर दिखाई दे रहे है यहां पर छोटी-छोटी घास उगी हुई है और एक --

तस्वीर मे हमें रेड कलर का घर दिखाई दे रहा है जिसमें छे दरवाजे है तीन दरवाज़ों पर कमाने बनी हुई है यहां पर दो मूर्तियां भी नजर --

यहां पर बहुत ही प्यारी घास उगी हुई नजर आ रही है छोटे- छोटे पेड़ भी दिखाई दे रहे है और यहां पर दूर-दूर तक कोई घर नजर नहीं आ रहा है।

इस तस्वीर में बहुत ही बड़े बड़े झाड़ दिखाई दे रहे है और यहां पर एक रस्सी लटकी हुई है जिस पर हम यहां पर एक कपड़े सुखाये गए है।

तस्वीर में बहुत ही बड़ा और घना जंगल दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत ही बड़े- बड़े पेड़ दिखाई दे रहे है और बहुत ही कम घर दिखाई दे रहे है जिनमें से एक घर का कलर --